लेफ्ट साइड में दो पेड़ एक खंभा लगा हुआ है राइट साइड में भी खंभा लगा हुआ है और पेड़ लगा हुआ है।

नीचे से काफी इंसान जा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ पेड़ लगे हुए--

सामने सन लाइट दिख रही है जो सन लाइट को एडिट किया गया है थोड़ी सा उस पर तीन चार कलर देख रहे हैं जैसे कि हल्का ग्रीन और कमल का फूल बना हुआ है सन लाइट के ऊपर--

और इस गार्डन में कुछ सूखे पेड़ और कुछ हरे भरे लंबे बड़े बड़े--

जैसे यहां पर एक बोर्ड टंगा हुआ है वहां पर अजय सी_सी_टी_वी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में और उस पर अगर डिजाइन की बात करें कुछ बॉक्स बना है।

सामाने ग्रीन कलर की दिवाल खड़ी हुई है जा करके सामने कुछ आदमी आ रहे हैं यहां पर--

यह कुछ फल की फोटो है जिस फल का कोई ऐसा मतलब अभी पता नहीं है ये किस चीज के फल होते हैं जैसे एक ट्रे के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है प्लेट में ही काफी सारे फल रखे हुए हैं।

यहां पर काफी भीड़ लगी हुई है जैसे कि कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं कुछ इंसान खड़े हुए हैं सामने एक दुकान रखी हुई--

और इसका एक कलर में चेहरा भी दिख जाए रिफ्लेक्शन इतना साफ दिख रहा है इस कलर का--

यहां पर काफी सारे इंसान हैं लड़के हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं छोटी छोटी बच्चियां हैं।